मकान है बहुत बड़ा मकान है तीन मंजिल है और पीला रंग के फूल साइड से दिख रहा है। एक आदमी नीचे खड़ा है एक आदमी ऊपर खड़ा है।

पेट्रोल पम्प है वह पर एक बी रोड आती है न नीचे ईटा है लाल-लाल पीला ईटा से वो बना हुआ बना एगो आदमी जा रहा ले वो पीछे कुत्ता बैठा ले पेट्रोल पम्प पर एक अदनी पेट्रोल ड़े रहा है।

गामिनी विवाह भवन हेय और बहुत सारा साइन बोर्ड लागल हेय आगे से रोड हेय उधर साइड में एगो बस लागल हेय और खजूर के पेड़ हेय नारियल के पेड़ हेय बहुत सारा प पेड़-पौधा सब ओय विवाह भवन में लागल हेय शौ के लेल।